यह एक हॉस्पिटल है जिसका दीवाल का कलर लाल और पीला है और चार पोस्टर लगे हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।

एक टेबल पे हरा कलर का कपड़ा रखा हुआ है और एक लाल कलर का कपड़ा रखा हुआ है| एक आदमी खड़ा है जो मोबाइल देख रहा है और टेबुल पे हाथ रखकर के खड़ा है| कपड़े का कलर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुन्दर|

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक दुकान है जिसका कलर पीला है और एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका कलर लाल है| मिट्टी का कलर नीचे जमीन पर लाल कलर का है और थोड़ा-सा पानी गिरा हुआ है साइड में |

एक आदमी अंदर खड़ा हुआ है तीन छोटे-छोटे टेबल रखे हुए हैं एक बाहर कुर्सी रखी हुई है एक पीले कलर का टब --

एक बुक की दुकान है| बुक की दुकान के अंदर बहुत सारी बुक रखी हुई है| बाहर छोटे-छोटे टेबल पे डब्बे रखे हुए जिसमें चॉकलेट है| दुकान के बाहर बहुत सारी झोले टंगे हुए हैं कलरफूल झोले हैं।

मैदान के साइड साइड में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही सारे घर हैं जो जिनका कलर सफेद है हरा है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और अच्छा लग रहे हैं।

यह एक बोहोत बड़ी रोड है एक साइड में बोहोत बड़ी-बड़ी दुकाने हैं दूसरे साइड नीचे जमीन पर सामान लेकर के बेच रहे हैं।

एक मिठाई की दुकान है जिसमें बहुत सारी मिठाई रखी हुई है| दुकान के ऊपर एक पत्रा लगा हुआ है जिसका कलर सफेद है।

यह एक अ बहुत ही पुराना किला है बहुत टाइम पुराना है| इसके कलर भी निकल चुके हैं| बहुत जगह से ईंटें दिख रहे हैं| इसमें बहुत सारे गढ्ढे हुए हैं जो खिड़की की तरह दिख रहे हैं।